यहाँ पर स्टेज बना हुआ है। जिसके ऊपर अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। छत पर सीलिंग लाइट भी दिख रही है। सामने खुर्चिया लगी है जिस पर दो व्यक्ति बैठे है।

ये एक भीड़-भाड़ वाली जगह दिख रही है जहाँ पे कई महिलाएं पुरुष आदि खड़े हुए हैं।

इस तरह की इमारते प्राचीन समय में बनाई जाती थी इसके दरवाजे बड़े-बड़े और खुले हुऐ है और रोशन दान बने है यह साफ सुथरी और मजबूत दिख रही है।

यहां अलग-अलग अल्मारियां हैं जिनमें अलग-अलग समान रखा हैं यहां पर जरूरत का हर समान दिखाई दे रहा हैं।

यहा पर कई रोशन-दान दिखाई दे रहैं है और इसकी बनावट भी वेसी ही है जैसे पुराने महल हुआ करते थे। यह गुलाबी रंग से पूता हुआ दिख रहा है।

लाल से रंग से पुता ये चर्च बहुत सुंदर दिख रहा हैं उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा हैं और अलग-अलग सीढ़िया नुमा तरीके से यह बना हुआ सुंदर लग रहा हैं।

इस चित्र मे हमे एक ड्राय क्लीन की दुकान दिख रही है दीवार पर उस का बोर्ड लगा हुआ है और दीवार सफेद और हरे रंग से पेन्ट की हुई है।

चित्र में हमें एक घने बस्ती दिखाई दे रही है दूर-दूर तक मकान ही मकान दिखाई दे रहे हैं।